निचे का फ्लोर ब्राउन कलर में है।

गाजर भी रखा हुआ है।

कप और ग्लासेस पर रखा हुआ है।

आदमी टी शर्ट और जींस में है।

चेयर भी रखा हुआ है।

रस्ता में गाड़िया भी चलके है।

हॉस्पिटल में बहोत सारे विंडोज भी दिख रहा है।

अमूल कूल भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे इंसाने दिख रहा है रास्ता भी है।

आसमान भी दिख रहा है।

जिसमें बहुत सारे खिड़कियां भी दिख रहा है।

बहुत सारे आईना भी लगा के है।

छोटे छोटे घास भी उके है।

बहोत सारे पेड़ पौधे भी है।